बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

टोपी भी पहना हुआ दिखाई दे रहा है ।

वहां पे बहुत सारे बच्चे बैठ करके लिख रहे हैं।

किसी का हाथ में पेन और कॉपी है।

ये दृश्य मे एक रेस्टोरेंट का नजर आ रहा है जहां पे एक टेबल लगी हुई है।

यहां पे बहुत सारी गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही है।

चारों ओर लकड़ी के कवबोर्ड बनाकर के ढेर सारी कलरफुल बुके रखी हुई है।

इसपे नीचे कलर किया हुआ है कलर रेड और व्हाइट है।

के दरवाजे पे बैलून से सजाई हुई है।

इस दृश्य में एक आदमी नजर आ रहा है।

यहां पे कुछ टेबल बिछी हुई है और कुछ चेयर भी लगी हुई है।

पेड़ के अंदर एक बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

ऊपर प्लास्टिक घिरे हुए हैं।

दृश्य में एक हाल दिखाई दे रही है जो बहुत बड़ी सी है।

इस दृश्य में एक रोड नजर आ रही है यहां पे एक ऑटो जाती हुई दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में रोड नजर आ रही है।